यहां पर कुछ टेबल और चेयर लगा हुआ है।

यहां पर डस्टबिन भी रखा है लोग सभी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं।

एक बाइक रिपेयरिंग दुकान है।

यह एक ग्रॉसरी शॉप है।

हाईवे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

और यहां पर अच्छे अच्छे मिर्च दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर एक काले रंग की स्कूटी लगी हुई है।

तो स्कैनर भी बने हुए हैं।

रूम के बगल में एक स्कूटर लगा हुआ है।

रूम के बाहर तीन काले रंग की कुर्सी लगी हुई है।

धूप के साथ साथ बहुत सुन्दर सुंदर फूल खिले है।

इस उद्यान के बगल में बड़ा सा अपार्टमैंट दिखाई दे रहा है।

यह एक बाजार है बाजार में फल की दुकानें दिखाई दे रही है।

और कुछ गाड़ियां भी लगे हुए हैं।

टेज में दूल्हा दुल्हन के लिए टेबल रखा हुआ है।

वॉल पर अनेक तरह के इमेज लगे हुए हैं ।

काउंटर पर एक लड़का पूछताछ कर रहा है।